ट्रेन की पटरियां एवम पानी के पास--

यह झाड़ियों जैसा दिखाई दे र--

जहां ये व्यक्ति खड़ा है पीछे झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पे कुछ बोर्ड्स पे तस्वीर बनाई गई है जहां वीड़ा ली हुई--

यह तस्वीर एक घर के माहौल को प्रदर्शित कर रहा है।

बहोत ही मनभावन दृश्य है यहां पर पत्थर पानी है।